ये एक फूल की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ काफी सारे फूल रखे दिखाई दे रहे हैं यहाँ अलग-अलग कलर के काफी सारे फूल दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज लाल --

इस तरफ काफी मैदान और हरियाली दिखाई दे रही है छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए हैं ये नजारा बहुत सुन्दर लग रहा है।

बिच से आने-जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है और दोनों तरफ --

सामने की तरफ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

नीचे कुछ बलून डले हुए हैं और कुछ बैलून सीलिंग में लटके हुए हैं।

जो कि बच्चो के जेन्टसो के लड़की के लड़कियों के सभी प्रकार के कपडे दिखाई दे रहें हैं सामने की तरफ --

पेड़ के नीचे दीवाल पर एक इसलोगन लिखा गया है।

अंदर की तरफ काफी लोग खड़े दिखाई दे रहें हैं किनारे की तरफ एक स्टूल रखा हुआ है और एक रेड कलर --

निचे फर्श पर अलग-अलग कलर की छोटी-छोटी कालीन बिछी हुई हैं जिनमे बैठ कर भी योगा कर रही हैं।

ये किसी जिम की अंदर की इमेज है जहाँ लाइन से काफी सारे कसरत के उपकरण रखें हैं।

साइड में भोले नाथ और हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

सामने नीचे की तरफ एक चेयर रखी हुई है और एक मिर्रर कांच बना हुआ है किनारे तरफ बैठने के लिए चेयर डली हुई हैं।